सामने एक बंदा भी दिख रहा है और एक ऑटो भी नजर आ रहा है ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है बहुत --